साथ में एक इमेज दिखती हुई है उसके पास में दो लोग आते हुए उसके पास दो इमेज रखी है और एक फोटो फ्रेम रखा है उसके पास दो लोग खड़े हैं।

अ पास में कुछ ऑटो वगैरा खड़े हैं। उसके पास कुछ कार्स खड़ी हुई हैं अ साइड में सर बड़े-बड़े पोल लगे हुए हैं जिसके पास कुछ पेड़ हैं। पीछे की ओर कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इधर लोग टहल रहे।

दुकान में और कुछ अदर्श मेटेरियल रखे हैं। उसके पास में इंक की डिब्बी रखी है औ पास में कुछ क्रीम्स रखी है औ साबुन्स रखे हैं औ उसके ऊपर कुछ पेन टंगे हुए हैं और साइड में कुछ पैकेट्स रखे हुए पेन के और उसके पीछे इंक्स की डिब्बी रखी हुई है।

और लकड़ी जैसे वो बने हुए हैं जिसके पास में एक पेड़ बंधा हुआ है और साइड में एक ही पेड़ जैसे दिख रहे हैं और इसपे लकड़ियों पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और --

एक बड़ी सी- बड़ा सा मॉल है। जिसके अंदर कुछ जैकेट्स टंगे हुईं हैं और पास में इमेज सजी हुई हैं और कुछ काउन्टस् और पैन्ट्स रखी हुई है।

स्टोन्स पड़े हुए हैं औ साइड में कुछ पानी बह रहा है और सामने की ओर जंगल हैं बड़े-बड़े और इधर साइड में चट्टाने जैसी टाइप के कुछ पड़े हैं। उसके पास में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और सामने की ओर जंगल दिखाई दे रहा है जो चोटी दिखाई दे रही बड़ी ऊंची सी।

इधर एक तालाब नहर जैसी बनी हुई है औ उसके पास में मगरमच्छ है और कुछ ऊपर भी टिले जैसा बना हुआ है। साइड में एक लकड़ी जैसी रखी हुई है और पास में एक छोटी सी दीवार है जिसके उस पार कुछ पेड़ बने हुए हैं और एक --